कुर्सी के ऊपर एक महिला भी बैठी हुई है।

इस दुकान के अंदर प्लास्टिक का सामान भी रखा हुआ है।

मकान के ऊपर कुछ ग्रिल भी लगी हुई है।

स्टेजे के बराबर साइड में कुछ घर भी बने हुए हैं।